यहाँ पे मैं देख पा रही हूं बहुत सारी बिल्डिंगै दिखाई दे रही है जो कहीं रंगीन और कहीं ब्लैक एंड व्हाइट --

और नीचे एक साइड में एक बड़ा- सा सफेद लोहे कलर का लोहे का गेट बना हैं।

पीले कलर की लगी हुई है और नीचे बड़े दो खंबे बने हुए हैं और नीचे की दीवाल का कलर सफेद है और खंबे--

थोड़े क्रीम से कलर के हैं और नीचे कार खड़ी है एक खंभे के बगल में बड़ी सी सफेद कार है।

यहाँ पे मैं यहाँ पे मैं देख पा रही हूं सामने एक हाल है जिसमें नीचे एक बेड रखा है जिसमें दो तकिया बड़े ही सफेद और बीच में एक--

हम्म्म पानी गिर रहा है जो सफेद कलर का है और नीचे बहुत सारे पत्थर है जिनमें से बहता बह रहा है।

यहाँ पे मैं देख पा रही हूं सामने में दो बड़ी-बड़ी बिल्डिंग दिख रही है एक पीले और कथई कलर की है और एक--

ये कलर लगे हुये है और सामने नीचे बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं जिनके दोनो साइड --

सर्किट लगी हुई है और मंदिर के ऊपर का कलर रंगीन दिखाई दे रहा है ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है।

नीली भी नीली लाइटिंग लगी हुई है नीचे दो लोग खड़े दिखाई दे रहे है।

बीच में एक गेट है जिसकी दोनों साइड सफेद पट्टी पुती हुई है और ऊपर भी सफेद है।

ऊपर ल दोनों साइड काले अक्षरों में कुछ लिखा हुआ है ऊपर भी लाल अक्षर में डी_एस_आर_आई लिखा हुआ है।